यह पेट्रोल पंप का सीन दिखाई दे रहा है सामने।

यह एक सीन दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में दो आदमी बैठे हुए सामने दिखाई दे रहें।

भीतर एगो पिल्लर सफ़ेद कलर के दिखाई देरे है।

सामने काँच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ओर सामने मैंन गेट पे --

पानी में ब्रक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे सामने एक सीन दिखाई दे रहा है बहोत --

उसमे गेट में तीन रैलिंग बनी हुई है सफेद कलर की।

यह एक बंधान का सीन दिखाई दे रहा है यह एक जलाशय का बंधान है।

विभिन्न प्रकार के पौधे हरे-भरे रंग-बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने इस रोड दिखाई दे रहा है इस रोड पर एक बहुत ज़्यादा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लाल और पीली --

एक बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं | पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है बाजू में सड़क दिखाई दे रही है वो लंबी-लंबी बड़े-बड़े वृक्ष हरे-भरे दिखाई दे रहा है ।

सामने एक सीन दिखाई दे रहा है इसमे बड़े-बड़े गड्डे एक लंबी कतारों में लगे हुए दो कतारों में खड़े लग गड्डे खुदे हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक सामने मस्जिद का नज़ारा दिखाई दे रहा है।

एक सामने एक डैम का सीन दिखाई दे रहा है डैम बहुत लंबी कतार में बना हुआ दिखाई दे रहा है इसके गेटो में से पानी --

इस साल बहोत बड़े-बड़े वृक्ष लगे हैं इस साल ही बड़े-बड़े वृक्ष लगे हैं ऊपर खुल्ला आसमान दिखाई दे रहे है जो परतों दो परतों में --

पुता है उसमें लाल कलम कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लगा दिखाई दे रहा है बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे है और बिजली के तार --

यह ये लड़कियों का नज़ारा है छात्रा बैठी हुई है ड्रेस पहरे हुए सफ़ेद व पीस लाल कलर के दुपट्टे डाले हुए हैं।